आमतौर पर इतनी फोटोस होती नहीं है पर ये आपकी भक्ति पर डिपेंड करता है की आप कितने रखे हैं सो यहाँ पर बहोत सारी फोटो है।

प्रार्थनाए अगर मन से किया जाए तो ऑफकोर्स वो पूरी होती है और ये बहुत ही शांति और बहुत सुकून वाला जगह है।

हई गाइस जैसा की आप देखे सकते हैं ये एक स्विमिंग पूल है एंड ये क्राउडेड नहीं है एण्ड यहाँ पे बहुत सारे राइड्स भी हैं।